और इसका अ सत्व बहुत ही अच्छा होता है और ये एंटीसेप्टिक --

ये एक पर मिलगीन मिल्क इंडस्ट्री है।

और मैगी खाने में बहुत अच्छा --

कोशिश यह करनी चाहिए कि हम उसके किनारे पर ही रहें दूर ना जाएं।

ये स्विमिंग पूल है। इसमें बच्चे नहा रहे हैं। ये होटल के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर फब्बारा भी है।

फव्वारे से फ़व्वारा बहुत ही सुंदर लग रहा है ये मनोरम दृश्य बहुत ही मन को लुभा रहा है।